जहां पर पेट और लीवर का--

इस तस्वीर में आप एक कंप्यूटर की दुकान--

इस तस्वीर में आप नहर--

हमें एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

यह स्कूल बारवीं तक का है।

साइड में एक आदमी और--

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। ये ठीक होने के--

इस समय यहां पर--

यह एक बहोत अच्छी झील है।

रखे हुए हैं।